यहां पे चार इंसान खड़े हैं और चारों इंसान ने अलग-अलग रंग की टी-शर्ट पहनी है एक ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है एक ने --

व्हाइट रंग की टी शर्ट पहनी है और एक ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है और एक ने पीले रंग की शर्ट पहनी है।

और एक औरत ने ग्रीन कलर के साड़ी पहनी और जो आदमी यहां पे खड़ा है वो सफेद रंग का शर्ट पहना है।

यहां पे बहोत सारी गायें एक गाय इधर ही देख रही है और--

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे एक सोफा है यहां पे बहुत सारे तकिए हैं सोने के लिए आप सो भी सकते हैं और एक नीले कलर का बोतल है जिसमें नीले कलर का--

और उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई एक इंसान है जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

एक नदी है और वो जो जहां पे बहोत सारे पानी पानी कुछ --

यहां पर बहुत सारा सामान है एक दुकान है डिब्बे में डिब्बे में कुछ चीजें रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारे बैलूंस लगे हुए हैं दो टोटो है और ये तीसरी --

और इंसान काले रंग की जींस पहन के है और जो हैं।

बगल में एक तस्वीर है उसमें कुछ लिखा हुआ है गोल्डन कलर का है।